यहाँ पर चाय और कॉफ़ी मिलती है।

व्यक्ति चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं। और दुकानदार सामने खड़ा है।

यहाँं बहुत ही अच्छी सजावट है। सामने कुर्सी डली हुई है।

सामने गुब्बारे लगे हुए हैं और व्यक्ति खड़े हुए हैं।